और यह एक बुक्स की दुकान लग रही है और यह बुक्स की दुकान है। जहां पर लोग इन्हे पढ़ने आते हैं।